और इमेज में आपको एक व्हाइट कलर का पंखा एकदम सामने से दिख रहा हैं और दूर दूर तक एक दो तीन पंखे दिख रहे है।

यह इमेज जो है अ फिजिक्स वाला क्लासरूम के अम्म इंट्रेस का इमेज दिखाई दे रहा है। सामने जो है वह एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर --

फिज़िक्स वाला के जो संस्थापक हैं उनकी इमेज है और आ उनके ऊपर एक पटना ऐसे कर के लिखा हुआ है यहां पे एक बाम्बू का स्ट्रक्चर --

आ लगा हुआ है जिस जहाँ पे एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है और दूसरा आदमी जो है अ पोस्टर को खींच रहा है।

आ नीले कलर का शर्ट टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई हैं। उसके बॅकग्राउंड में आ कुछ मंदिर और कुछ इमेजिज़ दिखाई दे रहे हैं।

यह इमेज जो है एक अम्यूज़मेंट पार्क की इमेज दिखाई पड़ रही है आ इमेज जो है बोहोत ऊंचाई से ली हुई है और नीचे जो है --

जिसका एक हाथ मंदिर जैसे एक स्टेचयु पर रखा --

नीले कलर के जैसे हल्का पीला दरवाज़ा भी लगा हुआ है। उसके बगल में --

इसमें सीमेंट से बने पिलरो के ऊपर एक छत बना हैं। जिसके बीच में सफेद कलर के ड्रेस में भीम राव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है।

एक व्यक्ति सफ़ेद कलर की टी-शर्ट में आधा नीचे की और झुका हुआ बैठे जैसा है।

उसने पैर में जूते पहन रखे हैं। एक व्यक्ति अन्य खड़ा हुआ हैं दीवाल के सहारे।

यह एक नीले कलर के कपड़े के ऊपर हड्डियों का लेटा हुआ कंकाल दिख रहा है।

यहाँ बस सामने की ओर खड़ी हुई है।